और यह जो है इधर भी कुछ छोटा-छोटा मुर्तियाँ गेट पे लगा हुआ और गेट भी बहुत शानदार दिख रहें हैं।

यहाँ एक मेला लगा हुआ है और ये मेला बहुत शानदार है| रात का सीन है और इसमें जो है बहुत बड़े-बड़े लाइट लगे हुए हैं बहुत बड़े-बड़े ये झूला लगे हुए हैं।